बाइक भी बहोत सारी लगी हुई --

और इसके बगल में एक एक चढ़ने वाला भी लगाया गया है। एक जो कि बहोत सुंदर है। देखिए यहां पे लाल-लाल इसपे हमेशा फरा हुआ है जो कि बहोत ही सुंदर दिख रहा है। देखने में तो बहोत ही --

देख सकते है बहोत ही काफी सुंदर है। जो ये देखने में बहोत ही सुन्दर --

बगल में एक फोर व्हीलर भी लगा हुआ है जो कि स्पीड में जा रही बहोत ही सुंदर देखने में लग रहा है।